एक टावर है बिल्डिंग टावर जिसमें घड़ी लगा हुआ है बड़ा सा।

एक व्यू है कोई भी विलेज एरिया का यहां एक चांघर है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है मौसम भी क्लॉउडी सा है।

इस फोटो में एक छोटा सा बिल्डिंग दिखाया गया है एक ऑफिस है ग्राम पंचायत का उसके आगे छोटा सा गार्डन है हरियाली हरियाली है पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं।

बिल्डिंग का जो थीम है वो नीला है खिड़की और दरवाजा कच्चा है ब्राउन रंग का है।

नीचे तीन चार एक मेटल की चीज पड़े हुए हैं नदी है बहुत अह बड़ी सी बहुत कचरा पड़ा हुआ है किनारे किनारे में।

सभी छात्र मेल और फीमेल लिख रहे हैं मिल के अपने कॉपी में।

हाथ में सब मोबाइल में कैमरा कैमरा पड़े हुए हैं ऊपर--

पिक्चर में एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जो की इनकंप्लीट है वाइट रंग का है खिड़कियां बहुत सारे हैं दरवाजा है उसके बगल में चर्च है जिसका सीलिंग निला रंग का है और वाल्स वाइट रंग का है।

बैठने के लिए जो जगह है वो ब्राउन रंग का है छोटी सी सीढ़ी दी हुई है चढ़ने के लिए।

डेकोरेटेड सा बार्बर का शॉप है बढ़िया सा बैलून के साथ और ये मेरीगोल्ड फ्लावर के साथ डेकोरेट किया गया है।

फोटो में एक हार्डवेयर शॉप है जिसमें बहोत सारे हार्डवेयर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं और सब रखे हुए हैं नट बोल्ट्स रखे हुए हैं बहोत से वायर्स रखे हुए हैं खिलियां रखी हुई हैं।

सभी लोग बच्चे बच्चे दिख रहे हैं जब गोदी में चिल्ला रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं राइट साइड एक पेड़ का फोटो है।

इस पिक्चर में एक ब्रिज दिखाया गया है उसके नीचे दो तीन चार वोट सब तैर रहे हैं नदी में।

ये फोटो एक छोटे से लाइब्रेरी का है जहां बहोत सारी किताबें कॉपी वगैरा रखे हुए हैं।

पीछे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है लेफ्ट साइड बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

व्यू है आसपास का पूरा हरा भरा पहाड़ों से ढका हुआ हरियाली ही हरियाली है इसके आगे एक टावर दिख रहा है दो टावर उसके आगे बना हुआ है उसके नीचे बहुत सारे घर हैं आस पड़ोस में।